और इधर की साइड में एक साइकिल है और बैंक के आगे आदमी और महिलाएं खड़ी है।

और जैसे ही ये वीरण है उनके जस्ट पास--

जो की लड़कियों के और महिलाओं के है कपडे के अलग अलग कलर है और पीछे एक लकड़ी का कुछ बना हुआ पड़ा है।